यहां एक और आदमी आसमानी कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस है।

यह एक शॉप का दृश्य है तथा यहां पे काफी सारे बॉक्स वगैरा दिख रहे हैं जो कि ब्राउन और वाइट करके दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ दवाई की बोतल दिख रहे हैं जो की ब्लैक और वाइट करके दिखाई दे रहा है।

और ये कुछ लोहा भी दिख रहा है जो कि रेड और सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां एक जूता भी दिख रहा है जूते का रंग व्हाइट कलर का है दीवार भी है।

ब्लू और व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा--

तथा यहां काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं जो की हरे रंग के हैं।

यहां पे बहुत सारे बैलून दिख रहे हैं।

फूलों के रंग रेड येलो ग्रीन और भी कई तरह के हैं तथा यहां स्टेज का रंग रेड कलर का है और हरा रंग का है।

यहां कुछ बाइक भी दिख रहे हैं जोकि ब्लैक और रेड करके दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे तीन सिलेंडर नजर आ रहे हैं जो की ब्लैक और ब्राउन रंग के है सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है।

पीछे एक घर दिख रहा है जिसका खिड़की का रंग ब्लैक कलर का है और दीवार का रंग व्हाइट कलर का नजर आ रहा--

यह एक जिम का दृश्य है जहां पे कुछ लोग दिख रहे--

एक घड़ी भी दिख रहा है जो कि व्हाइट और ब्लैक कलर का नजर आ रहा है तथा कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं जो कि व्हाइट कलर का--

तथा एक डस्टबिन भी नजर आ रहा है जो कि आसमानी रंग का है।

आतः फर्श का रंग रेड और वाइट करके दिखाई दे रहा है।